व्हाइट कलर का रूम है।

और वो बहुत सारे जंगल है।

सारे लोग रंग बिरंग कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यह एक पेट्रोल पम्प है और एच_पी कंपनी वाला पेट्रोल पम्प है।

और नीचे तो पोस्टर उसमें पेटीएम लिखा हुआ दिखाई पड़ा है।

लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और खिड़की दिखाई पड़ रहे है।

एकठो फ्रिज दिखाई पड़ रहें हैं जिसमें कोकोकोला लिखा हुआ दिखाई पड़ रहें हैं।

एक ठो फस्टी बोतल दिखाई पर रहे हैं।

और एक आदमी वाइट कलर का शर्ट और फुल पैंट पहने हुए है।

एक आदमी पीला कलर का शर्ट और जीन्स पहने है।

काफी सारे गाय दिखाई पड़ रही है।

स्कूल का दो ठो बस है।

चेयर है बैठने के लिए और ये एक व्यक्ति बैठे हुए हैं।

और गेट दिखाई पड़ रहे है।

ब्लैक कलर का शर्ट पहने हुए है और टोपी पहने हुए है।

और एक व्यक्ति जा रहे ओ उधर और वह ग्रीन कलर का शर्ट पहने हुए हैं।

और तीन ठौ आदमी दिखाई पड़ रहे हैं।

ये दो ठो पीछे आ रहे हैं।

और काफी चौड़ी लंबी नदी दिखाई पर रहे हैं।

पेन दिखाई पड़ रहे है और सेलो टॉप दिखाई पड़ रहे है।

जिओ लिखा हुआ दिखाई पड़ रहे है।

यहां पर पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

साड़ी पहनी हुई है और एक व्यक्ति फ्रॉक पहनी हुई है।

अ रंग बिरंगे फूल दिखाई पड़ रहे हैं।

और नीचे में व्हाइट कलर का फूल रखे हुए है।

पीला कलर और ग्रीन कलर का फूल है।

और बाहर में केले का खंभे दोनों कोना में रखे गए हैं।

यहां पर स्मार्ट टी_वी दिखाई पर रहें हैं।